इस तस्वीर मे हमे एक लड़की के बाल दिखाई दे रहे है जिसपे लाल रंग के क्लिप्स लगाए हुए है और आगे की तरफ सीसा लगा हुआ है।